बहुत से खिलौने दिखाएं दे रहे--

और कुछ पेड़ पौधे दिखाएं--

कुछ बैनर दिखाई दे रहे--

और चक्कल दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक दुकान दिखाई दे रही हैं।

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं सबके चेहरे पर ब्लर दिखाई दे रहा है एक--

वनस्पति से हरा हाती चीजे रखी हुई है।

रुकि हुई हैं एक बस चल रही है।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

और साथ में एक कोट की दुकान दिखाई--

एक मेज दिखाई दे रहा है कुछ लाइट्स लगी हुई दिखाई--

यहां पर एक कमरा दिखाई दे रहा है।